जिसका कलर नीला कलर है।

और धूप निकल रही है और ताजा मौसम --

जैसा की इस इमेज में दिखाया जा रहा है की एक स्टेज --

जो उसकी बॉडी को बता रहा है और वो एक जिम में खड़ा है जिम के साइड में एक गेट --

गाड़ी टोयोटा कंपनी की है गाड़ी उत्तराखंड की है गाड़ी का नंबर है ज़ीरो सेवेनटी बी ।

जो कि उत्तराखंड के केदारनाथ में बसा हुआ है।

उसके मुँह पे कुछ लगा हुआ है कुछ फेस पैक जैसा कुछ लग हुआ है कांच के ठीक मिर्रर के नीचे सामने।

नदी के उसपार दो लड़के बैठें हैं पानी को देख रहें हैं।

स्कूल के गेट लोहे का गेट बना हुआ हैं।

तीनो के व्यायाम करने का आसान कलर भी अलग-अलग है जिसमे से एक का ऑरेंज कलर है एक का गुलाबी कलर है और एक का बैंगनी कलर है।

जसे कि ठीक सामने बहुत सारे दोस्त अपने आप का फोटो खिचवाते हुए नज़र आ रहें हैं।

फोटू में दिखाई जा रहा हैं की किसी इंसान ने बड़ी ऊचाई से पर --

यहाँ पे एक तरफ फूल के पोधे लगे हुए हैं और एक तरफ घास --

मग के ठीक सामने एक काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर के ठीक ऊपर एक लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक गाड़ एक बोत बड़ा मैदान है मैदान के ठीक बीच में से एक रोड जा रहा है।